यहाँ पे देखा जाए तो अमन रेस्टोरेंट बांग वड़गड़ लिखा है बांधवगड़ लिखा है।

यहां पे आर_पी एक्ट्रीम कर के कैफे में जाना क्योंकि यहां पे जो लिखा है आर_पी एक्स_टी_आर_ई_एम_ए_आर_पी एक्सट्रीम ।

बहोत बड़ी चट्टान में बैठा है तथा यह किसी ऊपरी इलाके पहाड़ी इलाके का लग रहा तथा नीचे की बात की जाए तो बहोत सारे अ घर वैगेरे दिख रहे हैं।

तथा चेयर वगैरह रखाई हुई हैं जो चार के क्वांटिटी में हैं।

तो फ़ुल्‌ फूल वगैरह भी है और लाइट वगैरह भी जल रही है और इमेज की याद करें तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज है।

तथा इसमें देख सकते हैं कि ये फूल वगैरा की कोई दुकान लगी हुई है जोकि बिकने के लिए लगी हुई है।

तथा यह जबलपुर जैसा दिख रहा है क्योंकि रिहांडम बांध भी ऐसा ही दिखता है।